यह एक-अ कॉफी शॉप यहाँ टेबल पर तीन व्यक्ती बस चेयर पे बैठे हुए हैं।

यह एक फैक्ट्री हैं यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी पाइप लगे हुए हैं मशीन है मशीन में एक बड़ा पात्रे लगा हुआ है जिसके अंदर एक व्यक्ति बाल्टी के सहायता से कुछ--

डाल रहा है साइड में दूसरे व्यक्ति नीचे रख के बोले वो बाल्टी की तरफ देख रहा ह्म बगल में एक बड़ा पात्र रखा--

साडी को ऊपर के ओर किये। फोटो के पोज़ में खड़ी सामने से एक व्यक्ति फोटो क्लिक कर रहा--